सामने आसपास हरी-भरी पत्तियां घास पेड़ पोधे लगे हुए है।

यहाँ एक दुकान दिखाई दे रही है इस दुकान का नाम विजय पुस्तक भंडार है ।

कुछ सामान रखे हुए है।